यहां पर हमें दिखाई दे रही है पीछे ब्लैक कलर की टंकी है सामने घर बना हुआ दिख रहा है।

जिसके अंदर कुछ मिठाईयां रखी हुई है।

साथ में ही यहां पर पीछे की ओर--

साथ में ही छोटे छोटे यहां पर बॉटल्स दिख रही हैं कुछ यहां पर हमें फार्मिंग का सामान दिख रहा है एक गमला दिखाई दे रहा है।

म्यूजिक रूम्स कैफे फूड दिख रहा है।

पिंक येलो ग्रीन आदि कलर हमें यहां दिखाई दे रहे हैं।